खड़ा है एक नीचे में बैठा है जो वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ है।

इस फोटो में एक अलमारी है जो ब्लैक और वाइट कलर में है।

बहुत सारे पेड़ पौधे है।

फोटो में दो पहाड हैं एक छोटा पहाड़ है।

बहुत सारे चार्जर है बैटरी हैं।

पंखा है और बहोत सारे फोटो लगा हुआ है।

अलमारी है और नीचे टाइल्स है भीठा हुआ है।

ये ईटा से बना है।

यहां पे कई सारे बाइक रखा हुआ है।

और बहुत सारे चेयर है टी_वी है।

इस फोटो में बहुत सारा जूता रखा हुआ है।

फोटो में एक ब्लैक कलर का कार है।

फोटो में कई सारा पोस्टर लगा हुआ है।